बहुत दूर से लोग यहाँ पर पूजन देने के लिए आती है ।

छोटा-छोटा बच्चा है खेलता है स्कूल के चार पास में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा हैं बहुत सारा पेड़ में छोटा-छोटा फ्लावर भी दिखाई दे रहा है ।

इधर एक शादी का अनुष्ठान हो रहा है। चार-पास बोहोत सुंदर से लाया सजाया है बोहोत फूल लगाया है बोहोत अ लाइट्स भी है बोहोत अच्छा लग रहा है अ --

अखाड़ा है चार पास में बहुत सारा छोटा-छोटा बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लाइट्स भी जल रहा है ।

इधर एक यामाहा कंपनी का गाड़ी का शोरूम है। सामने एक बाइक स्कूटी खड़ा है। सेंटर टेबल है। पास में एक --

कैलकुलेटर पेन कुछ नोटबुक है आस-पास में बहुत सारे बु --

आज दुकान में मौजूद है इधर पे पेन पेंसिल इरेज़र नोटबुक बहुत सारी चीज भी मिलती है रोज यहाँ पे बहुत स्टूडेंट का भीड़ होता है।

आ मंदिर के आसपास में बहुत सारे बनाना पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत सारी अदर पेड़ भी है इस मंदिर में।

उम्म लोग आ मनी कलेक्ट करने के लिए इधर रोज आती है बैंक के बाहर --

सीलिंग में कुछ लाइट्स जल रहा है बैंक के अंदर भी बहुत सारे लाइट्स जल रहा है।

का बोतल भी दिखाई दे रहा है कुछ पेटी भी दी है दुकान के अंदर एक अलमारी है अलमारी में भी है बहुत सारे केक --

इधर एक बड़ा-सा बुक का दोकान दिखाई दे रहा है दोकान बहुत बड़ा है दोकान के अंदर बहुत सारे बुक्स दिखाई दे रहा है।

इस रेस्टोरेंट में रोज बहुत लोग खाना खाने के लिए आती है ।

एक ऊँचे फ्लैग उ उड़ रहा है आसपास में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने कस्टमर खड़ा है उसका जूता दिखाई दे रहा है ।

टी कॉफी सोडा सॉफ्टि सूप बहुत सारी चीज मिलती है दुकान में बहुत सारी चियर है एक टेबल भी है।

रोड अच्छा रेलिंग से घिरा है रेलिंग के पास बा बड़ा-बड़ा लैंप पोस्ट भी रोड में है।

इधर एक पोस्ट टेली का ऑफिस है ऑफिस बहुत बड़ा है ऑफिस की विंडो के सामने एक पोस्ट-बॉक्स दिखाई दे रहा है सामने एक लोग ऑफिस से --

इधर एक कैफे हैं कैफे बहुत बड़ा है कैफे के सामने तीन लोग खड़ा है कैफे की अंदर एक --

इधर एक ब्रिज है ब्रिज में एक लड़का खे सेल्फी खींच रहा है।

इस ब्रिज से रोज आज बहोत गाड़ी चलती है ब्रिज के पास एक रेल लाइन भी है।

डब्बा में भी बहुत सारे चीज है एक ग्लूकोंडी दिखाई दे रहा है कुछ मसाला की पैकेटस दिखाई दे रहा है।